जहां पे दो बस लगी हुई है।

इस चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है।

जहां पे श्री महंत हरिहर दास उच्च विद्यालय टेन टू ट्वेल्व लिखी हुई है बड़ी सी--

एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो की गुलाबी कलर की है।

और अंदर कुल्फी की मेन्यू लगाई हुई है।

इस चित्र में एक शॉप दिखाई दे रही है ।

इस चित्र में एक गार्डन एरिया दिखाया गया है।

यह दृश्य रात का दिखाया गया है।

और काउंटर पे बहुत सारी बुक और कॉपी रखी हुई है ।

अंदर बहोत सारे चेयर और टेबल दिखाई दे रहे है।

और कुछ झाड़ भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक पार्क दिखाई दे रही है ।

एक हाथी भी दिखाई दे रहा है ।

पार्किंग में तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं ।

नीचे बहोत सारे साइकल साइकलिंग पार्क किए हुए हैं।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

जिम पे बहुत सारी चीजें रखी हुई है।